ये चित्र गार्डन का है यहाँ काफी हद तक खुबसूरत पेड़-पौधे नजर आ रहे हैं। ये फूल जामुनी और सफ़ेद नज़र आ रहे हैं।

यहाँ पर पेड़ पौधे भी दिख रहे है आसमान किता साफ़ और खुबसुरत नजर आ रहा है ये चित्र भी बहुत ही खूबसूरती से लिया गया है।

एक कुर्सी भी है और एक खम्भे के पीछे दो आदमी भी खड़े हुए हैं जो आधे-आधे दिख रहे हैं।

यह चित्र में ब्रिज के नीचे का है इस चित्र में काफी लोग पानी के अंदर है।

ये चित्र एक लाइब्रेरी का है इस चित्र में एक लेडी चाय पीती नजर आ रही है।

ये चित्र एक पहाड़ी इलाके का है इसमें एक गुफा नज़र आ रही है जिसमे एक औरत है।